में हमें कुर्सी नजर आ रही है ये बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं। ये पार्टी वाला सीन लग रहा हेगा । यहाॅं पर टाइल्स --

इनमे हमें झूला दिखाई दे रहा है | गांव बच्चे लोग झूला झूलते हुए दिखा रहे हैं ग्रीन कलर की एक लड़की दिखाई दे रही है छोटी और ब्लू कलर का एक लड़का छोटा झूला झूलता दिखाई दे रहा है ।

दिखाई दे रहा है और इसका कलर है ऑरेंज आसमानी पर पड़ यहाँ बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यँहा पर घांस दिखाई --

एक जैंट्स बैठा दिखाई दे रहा है। दो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उधर शायद दो तीन विंडो दिखाई दे रही हैं।